यह एक बरगद का पेड़ दिख रहा है जिसके अगल-बगल मंदिर बना दिए हैं।

कोई क्रिसमस का महोत्सव मनाया जा रहा था यहां फादर मस्त राजा जैसे दिख रहा है।

को बांध कर रखा है टेंट लगाया है मस्त नीचे घास अच्छा सुन्दर हरा-भरा दिख रहा है और मस्त टेंट पहने ना गिरे करके अच्छा लगाया हुआ है।